नमस्कार दोस्तों एक्सपेरिमेंटल डेटा के प्लॉटिंग पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आप यह करने में सक्षम होंगे संख्याओं की एक सूची निर्धारित करने में
सूची का एलीमेंट वाइज़ स्क्वैरिंग करने में
डेटा पॉइंट्स प्लाट करने में
एररबार्स प्लाट करने में
आपको पाईथन में गणितीय फंक्शन्स के प्लॉटिंग के सिद्धांतों से परिचित होने की आवश्यकता है
हम समझाने के लिए सरल पेंडुलम का डेटा इस्तेमाल करेंगे
जैसा कि हम जानते हैं सरल पेंडुलम के लिए लम्बाई ल समय ट के सीधा आनुपातिक होती है
हम ल और ट के स्क्वायर वेल्यूज को प्लाट करेंगे
पहले हमें ल और ट वेल्यूज़ को शुरू करना होगा
हम इन्हें वेल्यूज़ के क्रम से शुरू करेंगे
हम दो वर्ग कोष्ठकों के अंदर कॉमा से विभाजित वेल्यूज़ से क्रम को परिभाषित करेंगे
इसे लिस्ट कहते हैं
चलिए दो क्रम ल और ट बनाते हैं
ल 01 02 03 04 0506 07 08 09 T 069 090 119130 147 158 177 183 194 क्रम ट के स्क्वायर को पाने के लिए हम आर्ग्युमेंट ट के साथ फंक्शन स्क्वेयर करेंगे
इसे वेरिएबल टीएसक्वेयर में सेव करते हैं
अतः टाइप करें Tsquaresquare कोष्ठक के अंदर ट त्सक़ौरे एंटर दबाएँ अब ल विपरीत ट स्क्वेयर बनाने के लिए हम केवल टाइप करेंगे
प्लॉट विथिन ब्रैकेट ल कॉमा टीएसक्वेयर कॉमा विथिन सिंगल क्वोट डॉट यहाँ सिंगल कोट दर्शाता है कि प्लॉट एक डॉट आकार में है
बड़े डॉट्स के लिए आप ओ भी दर्शा सकते हैं
इसके लिए पहले पहला प्लॉट मिटाते हैं
टाइप करें सीएलएफ क्लोज़िंग ब्रैकेट और एंटर दबाएँ
फिर टाइप करें प्लॉट विथिन ब्रैकेट ल कॉमा टीएसक्वेयर कॉमा विथिन सिंगल क्वोट ओ एंटर दबाएँ अब ब्रैकेट टाइप साफ़ करने के लिए टाइप करें सीएलएफ क्लोज़िंग ब्रैकेट
चलिए आगे बढ़ते हैं
किसी भी प्रायोगिक के लिए यंत्र और मानवीय प्रतिबन्ध के कारण माप में हमेशा एक एरर रहती है
अब हम कोशिश करते हैं और इन एरर्स को अपने प्लॉट में समझते हैं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
दिए हुए प्रायोगिक डेटा को बड़े डॉट्स के साथ प्लॉट करें
डेटा आपकी स्क्रीन पर है
यह डेल्टा अंडरस्कोर डेल्टा ल और डेल्टा अंडरस्कोर ट में दिया है
हम क्रम वेल्यूज़ को फिर से उसी प्रकार से शुरू करेंगे जैसा हमने ल और ट के लिए किया था
अब एरर बार के साथ ल वीएस ट स्क्वेयर को प्लॉट करने के लिए हम फंक्शन errorbar इस्तेमाल करेंगे
डेटा को प्लॉट करने से पहले हमें डेल्टा ल और डेल्टा ट के डेटा को पाने की आवश्यकता है
डेल्टा L विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट 008009007005006000006006001 डेल्टा T 004008003005003003004007008 अब एरर फंक्शन इस्तेमाल करें
टाइप करें एररबार विथिन ब्रैकेट ल कॉमा टीएसक्वेयर कॉमा xerrdelta अंडरस्कोर ल कॉमा yerrdelta अंडरस्कोर ट कॉमा fmt इन सिंगल क्वोट बो यह एक्स और य अक्ष के एरर बार के साथ एक प्लॉट देता है
डॉट्स नीले रंग के हैं
पैरामीटर्स क्सेर और येर एक्स और य अक्ष पर एरर हैं और एफएमटी प्लॉट का फ़ॉर्मेट है
उसी प्रकार से हम छोटे लाल डॉट्स के साथ वही एरर बार बना सकते हैं केवल एफएमटी के पैरामीटर्स को र डॉट में बदलें
प्लॉट मिटाने के लिए clf टाइप करें
एररबार विथिन ब्रैकेट ल कॉमा टीएसक्वेयर कॉमा xerrdelta अंडरस्कोर ल कॉमा yerrdelta अंडरस्कोर ट कॉमा fmtin सिंगल क्वोट र और एंटर दबाएँ
आप एरर बार के डॉक्युमेंटेशन की मदद से एरर बार के अन्य ऑप्शन्स का अन्वेषण कर सकते हैं
टर्मिनल पर errorbar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
दिए हुए प्रायोगिक डेटा को छोटे डॉट्स के साथ प्लॉट करें और साथ ही अपने प्लॉट में एरर सम्मिलित करें
डेल्टा एस डेल्टा एन के लिए डेटा आपकी स्क्रीन पर है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
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा 1फंक्शन अराय का इस्तेमाल करके संख्याओं के एक क्रम को निर्धारित करना
2
स्क्वेयर फंक्शन का इस्तेमाल करके एलीमेंटवाइज़ स्क्वैरिंग करना
प्लॉटिंग के लिए विभिन्न ऑप्शन्स प्रयोग करना जैसे डॉट्स लाइन्स
errorbar फंक्शन का इस्तेमाल करके ऐसे प्रयोगात्मक डेटा प्लॉट करना जिससे कि हम एरर भी दर्शा सकें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
निम्न क्रम को स्क्वायर करें डिस्टेंस अंडरस्कोर valueswithin स्क्वेयर ब्रैकेट 21 कॉमा 46 कॉमा 872 कॉमा 903 2
लाल प्लसेस में प्लॉट करें ल वर्सेज़ ट और उत्तर हैं 1
वेल्यूज़ के क्रम को स्क्वायर करने के लिए हम स्क्वेयर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं
जिससे कि हमें टाइप करना पड़े स्क्वेयर विथिन ब्रैकेट डिस्टेंस अंडरस्कोर वैल्यूज 2
हम एक अतिरिक्त आर्ग्युमेंट पास करते हैं जो वांछित पैरामीटर व्यक्त करता है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
आईआईटी मुम्बई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद